यह एक अ सैलून है जिनका नाम है नीरज सैलून । इसमें एक तस्वीर बड़ा सा लगा हुआ है जिसमें की बहुत सारे उ लड़को का पिक्चर है। इसमें तीन टेबूल कुर्सी है।

ऊपर नीले आसमान हैं। फैक्ट्री के अगल-बगल बहुत ही मनमोहक दृश्य है जो की हरे पौधे छोटे-छोटे घास के रूप में हैं।

यह एक शहर का दृश्य है जिसमें की काफी बड़े-बड़े बिल्डिंग भी नजर आ रहें हैं। बिल्डिंग के कलर भी रंग-बिरंगे हैं।

यह एक बड़ा सा किताब के दुकाने हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की कॉपियाँ रखे हुए हैं। जिसमें एक ब्लैक कलर का चेयर है और फाइल के रूप में सारे रेड कलर के फाइल --